ये एक तस्वीर है जिसमे लाइटे लगी है लोग दिख रहे है रोशनी है।

यहाँ एक पेड़ है बहुत सारी गाय है चादर है दीवार है पेड़ पोधे है आस--

ये एक घर है बहुत सारी मूर्तिया रखी हुई है बच्चा खड़ा है उसके साथ उसकी मम्मी भी खड़ी हुई है नीले कलर का पर्दा लगा है।